बस भी है जो दो ठे बस अभी खड़े है जेन्स --

नया-नया पूरा सोल्ड और लाइट वाइट भी जल रहा है टाइल्स वाइल्स भी लगा है पोस्टर वोस्टर भी दिवाल में छाप दिये हैं ।

ऊपर भी दुकान है जो रेक बहुत समान दिख रहा है जो रखा हुआ हैं।

और खजूर का पेड़ है दो ठे दिखाई दे रहा है बड़ा-बड़ा सा--

और इसमें केछुआ दिख रहै है तीन - चार ठे --